नदियों में छोटे-छोटे पत्थर है रखा हुआ पहाड़ --

गैरेज कार की गैरेज अच्छी सर्विसिंग आपको देता है।

सभी राज्यों का --

प्लास्टिक लगाए आपने कारो को सजाए --